एक रूम में लकड़ी का बहोत सुन्दर सोफा और टेबल रखा हुआ है जिसमें पीले रंग का बांस रखा हुआ है आस-पास पेटीएम् के लिए--

कल कर्टेन लगे हुए है जिनमें पिंक नीला सफ़ेद हरा रंग है आस पास--

पीले और सफ़ेद बादलो से घिरा हूआ है कुछ पत्ते सूखे हुए है।

प्लास्टिक के लिफाफों में निम्बू रखे हुए है जोकि हरे और पीले रंग के हैं।

बड़े से हॉस्पिटल में परिणाम लिखा हुआ है जिसके --

दीवारों पर लाल रंग की टाइले लगाई हुई है और भूमि पर भी लाल और सफ़ेद रंग की टाइले लगी हुई है।

पेड़ की जड़े दिखाई दे रही है।

और सिर पर पगड़ियाँ पहने हुए है उनमें --

भूमि पर डम्बल्स रखे हुए है ।

जगदलपुर लिखा हुआ है जिसमें दो मंजिला इमारत है जिसमें --

कच्ची भूमि पर चारों तरफ हिरन है और उनमें --

आसमान नीले रंग का है।

सड़क के किनारे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है नीचे भूमि पर चादरे और कार्टून्स लगाये हुए है ।

सड़क के किनारे स्टेट बैंक एटीएम् लिखा हुआ है जिसके बाहर बूढ़े व्यक्ति और पुरुष और महिलाएं खड़ी है।